इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ लोग अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे है एक द्वार दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे कोई सा कार्यालय दिखाई दे रहा है और कुछ दरवाजे दिखाई दे रहै है कोई सा सतुत लिखाई दे रहा है एक रस्ता सा दिखाई दे रहा है बरामदा।

इस तस्वीर मे पहाड़ी या दिखाई दे रही है पहाड़ी जैसी दिखाई दे रही है और उसका रंग कुछ पीला और हरा अ-ह-जैसा दिखाई दे रहा--

थोडा थोडा आसमान दिखाई दे रहा हैं और कुछ कच्ची जमीन दिखाई दे रही।

इस तस्वीर मे एक शादी का स्टेज दिखाई दे रहा है और कुछ कुर्सिया दिखाई दे रही है खाली और कुछ कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है और एक फार्म हाउस बना हुआ दिखाई दे रहा है एक पेड़ दिखाई दे रहा है और अँग्रेजी मे कुछ अक्षर लिखे हुए दिखाई दे रहे है गोरेवाड़ा लिखा हुआ है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है बहुत सारे हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है और चारों तरफ़ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहा है एक पार्क दिखाई दे रहा है कुछ लड़के खेलते हुए दिखाई दे रहे है और कोई और आ फ़िसलपट्टीया दिखाई दे रही है बड़ी-बड़ी।